ये बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां है।

रेस्टोरेंट के सामने कारे खड़ी हुई हैं।

यहां पे बहुत बड़े-बड़े पत्थर गिरे हुए हैं ये पत्थर --

जो कि पूरा खाली है साइड में छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं।

ये एक बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हैं।

साइड में ट्रैवलिंग बैग्स भी हैं जिसमें बच्चों की ट्रैवलिंग बैग्स भी हैं और बड़ों के टीम के ट्रैवल बैग्स भी हैं।

कॉन्फ्रेंस रूम मे टेबल और कुर्सियां लगी हुई है।

साइड में एक पेड़ खड़ा हुआ है।

यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

ये एक रोड साइड रेस्टोरेंट दिख रहा--

वहीं से काउंटर पे एक आदमी खड़ा है जिसने रेड चेक्स शर्ट पेहनी हुई है।

बहुत सारे झूमर भी लगे हुए हैं।

बसें दो ग्रीन कलर की दिख रही--

साइड में एक टावर नजर आ रहा है।

वहीं पे एक रोप जा रहा है।

मुझे एक बड़ा सा समुद्र दिखाई दे रहा है।

यहाँ बुक्स शलीके से जमाई गई है।

यहां पे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

यहां पे एक शोरूम दिखाई दे रहा।

शोरूम के ऊपर लिखा है बोस्टो सर्विसेज --

कारागिर काफी सारे मजदूर वाह खड़े हैं।

गेट के साइड्स में लिखा है रालामंडल अभ्यारण।

बिल्डिंग पे लिखा है होटल रॉयल रेसीडेंसी --